पे मैप्स वगैरा भी मिलता है।

वाइट कलर का गाड़ी है ये।

जिम का सामान बरा हुआ है बहोत ही अच्छा क्वालिटी का और--

जो बहुत ही नीट एंड क्लीन है इसका लाइटनिंग लाइटनिंग सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा है।

कपड़ा का शॉप है नीचे नीचे घर का सामान हुआ सामान है।

ये एक बहोत ही प्यारा सा बेकरी शॉप है।

कलर्ड किया हुआ है और जो ये बेकरी बहोत ही न्यू एंड क्लीन है और ऑर्गेनाइज्ड है।

और यहां पे कोई स्टॉप्स भी नहीं है अभी--

ये शॉप है प्यारा सा।

कोई भी नहीं है इस वक्त यहां पे।

एक व्हाइट कलर का कार खड़ा है उसका आगे ब्लैक कलर का--

और भी कोई भी नहीं दिख रहा है यहां पे आदमी ज्यादा नहीं दिख रहा है एक दो तीन ही है।

यह शॉप है जहां पर इंजन ऑयल --

ये एक शॉप है जहां में कुछ सामान मिलता है जैसे सर्फ़ कोलगेट और भी बहुत कुछ।

और वाल्स जो इसका नेवी ब्लू कलर में है इसका चेयर्स बहोत ही ऊंचा लग रहा है।

ये एक टूरिस्ट है वाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर का जींस ब्लैक कलर का बैग और वॉच पहने हुए स्टैचू का--

कुछ तरह का फेस्टिवल है।

बहोत ही जोरों शोरों से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहा है कुछ अंकल यहां पे--

इसका चेयर का कलर वाइट कलर का तीन चेय--

पूरा बिल्डिंग ही विनायक नाम से है ब्लैक कलर का है जो कि आगे में कुछ गाड़ी भी खड़ा हुआ हैं।

यहां पे अभी कोई भी नहीं है स्कूल बंद है अभी।

बिल्डिंग का कलर अभी नहीं लगाया हुआ है और--

वाइट कलर का वॉल है ये इसका बिल्डिंग का।

ये एक वीरवार सा जगह है रोड पे।

अलग से अलग कलर में है रंग बिरंगी कलर में--

एक भी स्टाफ नहीं है फिलहाल।

अ बच्चा लोग है और ये बच्चा लोग पढ़ने वाला है।

नीट एंड क्लीन है।